अंबारी में भी बहोत सारी चीज रखे खोले हुए है और उसके बगल में गुलदस्ता है।

कोई मानने के लिए करा है कोई वेट कर रहे हैं।

सब घूमने वाले भी हैं देखने वाले भी हैं रोड ओड भी गई है बहोत अच्छी क्यूट लग रहे कॉलेज जाती है कॉलेज भी करती है पार्क ओर्क भी घूम लेती है।

ये कोई बहुत सारी बड़ी मॉल है मॉल में बहुत अच्छी अच्छी समान मिल रही है।

बहुत ठंडे भी है कोई गरम जो जैसा खोजते है वैसा उनको मिलता है।